यहाँ पर एक बड़ा सा बांध बंधा गया है

वहाँ पर पेड़ भी दिखाई देगा तालाब के अंदर सूरज की रोशनी पड़ रही है यहाँ यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है

उससे आगे मंदिर जंगल दिख रहा है वह आगे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है वहां कुछ बदल दिखाई दे रहे हैं और सूरज की रोशनी